देख के मन खुश हो जाता है।

अच्छा लगात रहल हवे यहाँ सब बैठल वाटे आदमी कुर्सी लागल बाटे मेज लगल बाटे चारो और से सब गोला में बैठल वाटे।